इसमें मुझे एक जू दिख रहा है।

खेत में मुझे जंगल और पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

रोड में मुझे बेहता पानी दिख रहा है।

इसमें मुझे एक मॉल दिख रहा है।

इसमें मुझे पटरी के किनारे गिट्टियां दिख रही है।

इसमें मुझे स्कूल का क्लास रूम दिख रहा है।

इसमें मुझे एक शोरूम दिख रहा है।